यह मेट्रो स्टेशन की तस्वीर जिसमें कि विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन दिया हुआ है।

यह एक कन्फेक्शनरी की दुकान है जिसका नाम एस_एस_डी कन्फेक्शनरी है।

यह तस्वीर बांस और बल्लियों की है जिसमें की कई सारे लोहे की रॉड्स लगी हुई है।

नीचे डेस्क है और ऊपर एक वॉल पेंटिंग लगी हुई है।